नमस्कार दोस्तों
connecting to a mysql database के tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
mysql server प्रोप्रटीज को कॉन्फिगर करना
mysql server आरंभ करना
database को बनाना औऱ कनेक्ट करना
database tables को बनाना जिसके तहत हम दो methods का पता करेंगे
sql editor का उपयोग करना
create table dialog का उपयोग करना और अंततः
एक sql script को रन करना
इस प्रदर्शन के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ लिनक्स operating system उबंटु version 1204
और netbeans ide 711
आपको java development kit jdk v6
और mysql database server की भी आवश्यकता है
इस tutorial को सीखने के लिए database प्रबंधन की बुनियादी समझ आवश्यक है
अधिक जानकारी के लिए दिखाये गये link पर phpandmysql के spoken tutorials देखें
अन्य मानक programming शब्दावलियाँ इस tutorial में उपयोग की गई है
यह tutorial दर्शाता है कि कैसे netbeans ide से mysql database के लिए connection को setup किया जाय
एक बार connected हुआ तो हम ide s database explorer में mysql के साथ कार्य करेंगे
अब ide पर जाएँ
netbeans ide mysql rdbms के समर्थन के लिए एक bundled के साथ आता है
आपको netbeans में mysql database server access करने से पहले mysql server प्रोप्रटीज configure करना होगा
services window में databases node पर right click करें
mysql server properties dialog box खोलने के लिए register mysql server चुनें
पुष्टि कर लें कि server host name और port सही हैं
ध्यान दें कि ide default server host name के रूप में localhost प्रविष्ट करता है
3306 default server port number है
administrator username प्रविष्ट करें यदि प्रदर्शित नहीं है
मेरे system में administrator username root है
administrator password प्रविष्ट करें
मेरे system में password रिक्त है
dialog box के शीर्ष पर admin properties टेब पर click करें
यह आपको mysql server को नियंत्रित करने के लिए जानकारी दर्ज करने की अनुमति देता है
path/url to admin tool: field में
अपने mysql administration application के location के लिए type या browse करें
मेरे system में tool के लिए location है/usr/bin/mysqladmin
arguments field में admin tool के लिए कोई भी arguments type करें
इसे भी रिक्त छोडा जा सकता है
path to start command: field में
mysql start command की location के लिए type या browse करें
मेरे system में यह/usr/bin/mysqld _ safe है
arguments field में start command के लिए कोई भी arguments type करें
यहाँ मैं type करूँगीu space root space start
path to stop command: में
mysql stop command की location के लिए type या browse करें
यह आमतौर पर mysql संस्थापन directory के bin folder में mysqladmin के लिए path है
मेरे system में यह/usr/bin/mysqladmin है
यदि arguments field में command mysqladmin है type करेंu space root space stop
समाप्त होने पर admin properties टेब सदृश होना चाहिए कि screen पर क्या दिखाया गया है
ok पर click करें
पहले सुनिश्चित कर लें कि mysql database server हमारे सिस्टम पर रन हो रहा है
service window में mysql server node दर्शाता है कि mysql database server connected है या नहीं
यह रन हो रहा है सुनिश्चित करने के बाद databases>> mysql server node पर right click करें और connect चुनें
जब विस्तार करने पर mysql server node सभी उपलब्ध mysql databases को प्रदर्शित करता है
एक sql editor के माध्यम से databases के साथ बातचीत करने का एक साधारण तरीका है
इस उद्देश्य के लिए netbeans में builtइन sqlएडिटर होता है
आप इसे connection node पर right क्लिक करके access कर सकते हैं
अब sql editor का उपयोग करके नये database उदाहरण बनाते हैं
services window में mysql server node पर right click करें और create database चुनें
create database dialog में नये database का name type करें
मैं इसे name mynewdatabase दूँगी
आप भी दिए गए यूजर के लिए पूर्ण access प्रदान कर सकते हैं
default रूप से केवल admin यूजर को कुछ commands प्रदर्शन करने की अनुमति होती है
dropdown सूची आपको विशिष्ट यूजर के लिए इन अनुमतियों को असाइन करने की अनुमति देती है
यह यूजर को सबसे अधिक अनुमति देने के लिए एक अच्छा अभ्यास है सिवाय drop tables को छोडकर
और यूजर को केवल उन databases को संशोधित करने की अनुमति देता है जो उनके application द्वारा बनाए गए हैं
लेकिन अभी के लिए हम चेकबॉक्स को अचयनित छोड़ देंगे
ok पर click करें
अब tables बनाते हैं data के साथ उन्हें पॉप्यूलेट और tables में बनाए गए data को संशोधित करते हैं
mynewdatabase फिलहाल रिक्त है
tables मेंडेटा input करने के लिए पहले method का पता लगाएँ
database explorer में mynewdatabase connection node का विस्तार करें
यहाँ तीन sub folders हैं
tables views और procedures
tables folder पर rightclick करें औऱ execute command चुनें
main window में sql editor में एक रिक्त canvas खुलता है
इस sql editor में एक साधारण query type करें
अब मैंने sql editor में एक साधारण query टाइप कर दी है
यह counselor table के लिए table परिभाषा है जिसे हम बनाने जा रहे हैं
इस query को निष्पादित करने के लिए या तो task bar के शीर्ष में run sql icon पर rightclick करें
या sql editor के अंदर right click करें और run statement चुनें
ide database में counselor table तैयार करता है
आप इस message को output window में देख सकते हैं
जो कहता है कि command सफलतापूर्वक निष्पादित हो गयी है
इस परिवर्तन को सत्यापित करने के लिए database explorer में tables node पर rightclick करें
refresh चुनें
यह विशिष्ट database के वर्तमान status को अपडेट करता है
नया counselor table अब tables विकल्प के नीचे प्रदर्शित होता है
यदि आप table node को विस्तृत करते हैं तो आप अपने द्वारा बनाए गए columns को देख सकते हैं
अब tables में data input करने के लिए अगला method पता लगाते हैं
अर्थात create table dialog का उपयोग करके
database explorer में tables node पर right click करें औरcreate table चुनें
create table dialog खुलता है
table नेम text field में subject type करें
add column पर click करें
add column dialog में name field में id type करें
type dropdown menu से data type के लिए smallint चुनें
add column dialog box में primary key चेकबॉक्स चुनें
यह आपके table के लिए primary key निर्दिष्ट करने के लिए है
ध्यान दें जब आप key check box चुनते हैं तो index और unique check box स्वतः चयनित हो जाते हैं
null check box भी अचयनित होता है
यह इसलिए क्योंकि primary कीज़ database में unique row को पहचानने के लिए उपयोग की जाती हैं
ok पर click करें
शेष columns को जोडने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएँ जैसे screen पर दिखाया गया है
अभी हमने subject named table बनाया है जो name description और counselor id के लिए data रखेगा
ok पर click करें
database में sql queries रन करके हम database structures में data बनाए रखने के लिए हम जोड संशोधित और डिलीट कर सकते हैं
counselor table में एक नया record जोडते हैं
tables node context menu से execute command चुनें
main window में एक नया sql editor खुलता है
sqlएडिटर में एक साधारण query type करते हैंः
इस query को निष्पादित करने के लिए source editor के अंदर right click करें और run statement चुनें
सत्यापित करते है कि यदि नया record table में जोडा गया है
counselor table पर rightclick करें और view data चुनें
एक नया sqlएडिटर main window में खुलता है
table से सभी data का चयन करने के लिए एक query स्वचालित रूप से तैयार होती है
इस statement का परिणाम workspace के नीचे table view में प्रदर्शित होता है
ध्यान दें कि एक नई row को data के साथ जोड दिया गया है जिसे अभी हमने बनाया है
हम ide में बाहरी sql को सीधे रन भी कर सकते हैं
प्रदर्शनात्मक उद्देश्यों के लिए मेरे पास यहाँ sql query है
यह script दो tables को बनाता है जैसे हमने अभी बनाए हैं
अर्थात counselor और subject
क्योंकि script इन tables को अधिलेखित कर देता है
हम इन दो tables को डिलीट करेंगे यदि वे पहले से ही मौजूद हैं
tables डिलीट करने के लिए counselor table पर rightclick करें
और delete चुनें
confirm object deletion dialog box में yes पर click करें
इसी तरह subject table के लिए दोहराएँ
अब अपने system से मौजूदा sql query फ़ाइल खोलें
file menu से open file चुनें
इस फ़ाइल युक्त स्थान के लिए browse करें
script स्वतः ही sql editor में खुलेगी
सुनिश्चित करें कि mynewdatabase के लिए connection चयनित है
इसे editor के शीर्ष पर toolbar में onnection dropdown से check करें
task bar में run sql button पर click करें
और script चयनित database के समक्ष निष्पादित होती है
mynewdatabase connection node पर right click करें और refresh चुनें
यह विशिष्ट database के वर्तमान status के लिए database component अपडेट करता है
अब इन tables में से किसी एक पर rightclick करें और view data चुनें
workspace के नीचे आप इन tables में निहित data को देख सकते हैं
इस tutorial में आपने सीखा
अपने computer पर mysql configure करना
ide से database server के लिए connection set अप करना
data बनाना डिलीट और संशोधित करना और
sql queries को रन करना
नियत कार्य के रुप में
टेबल्स के साथ एक और डेटाबेस उदाहरण बनाएँ
अपनी व्यक्तिगत book library के रखरखाव के लिए आवश्यक data के साथ इन tables को पॉप्यूलेट करें
और data को देखने के लिए इन sql statements को रन करें
मैंने एक समान database बनाया है जो मेरी व्यक्तिगत फिल्म library का ब्यौरा रखता है
आपका नियत कार्य इस तरह होना चाहिए
screen पर दिखाए गए link पर उपलब्ध video देखें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
यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसको download करके भी देख सकते हैं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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद